ज जिसपर एक बोर्ड लिक्खा है और वो जॉकी लिक्खा है।

कुर्सी भी दिखाई दे रही है।

यहां इस पिक्चर में देख पा रहे इस पिक्चर में--

और यहां पर एक ड्रेसिंग टेबल भी--

एक लम्बा सा रोड दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे सोलर पैनल देखने को मिल रहे हैं जो--